इसमें मुझे हरे ताजे भुट्टे रखे दिख रहे है।

इसमें मुझे बहोत सारे ड्रॉज बने दिख रहे हैं।

इसमें मुझे फूल चढ़े दिख रहे हैं।

इसमें मुझे एक बड़ा स्टेज दिख रहा है।

इसमें मुझे पेड़ दिख रहे हैं।

इसमें मुझे शादी का डेकोरेशन दिख रहा है।

इसमें मुझे गार्डन में पेड़ दिख रहे हैं।

इसमें मुझे एक रूम दिख रहा है।

इसमें मुझे बहोत सारी चेयर्स दिख रही हैं।

नदी में मुझे दो बोट दिख रही है।

इसमें मुझे रॉयल एनफील्ड खड़ी दिख रही हैं।

इसमें मुझे दो लोग छत बनाते दिख रहे हैं।

इसमें मुझे कांच लगा दिख रहा है।

इसमें मुझे पत्थर की चट्टाने दिख रही हैं।

इसमें मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है।

इसमें मुझे पानी फिल्टर दिख रहा है।